यह एक पार्कसाइड एरिया है। इसपे लोग चलते हैं । आगे एक आदमी चल रहा है । यहाँ पर पेड़ दिख रहे हैं।

यह नाशपाती है हरे रंग की नाशपाती है। इसके आस पड़ोस में हरे रंग की बड़ी-बड़ी पत्तियां हैं।

यह पीले फूल हैं । ये बोहत अच्छे लग रहे हैं । ये पीले रंग के फूल हैं इनमें काफी डंडिया हैं। ये काफी सारे हैं। काफी अच्छे लग रहे हैं।

यह एक हॉस्पिटल है। इसमें छः बेंचे पड़ी हुई हैं। एक बेंच आगे हैं। इसमें रूम है।

बाइक वगैरा में इस्तेमाल किया जाता है बहुत यूज होता है इन चीजों का--

ये तमिल की है कोई लेडीज़ उनका पोस्टर लगा है उनके घर के बाहर।

एक आ बच्चा और उसकी माँ पूजा कर रहे हैं काफी सारे फल हैं। पूजा काफी अच्छे से उन्हे पूजा करी जा रही है चड़ाया जा रहा है काफी अच्छा लग रहा है |

सब इधर उधर कुछ देख रहे हैं इनके आस पास पेड़ हैं पीछे जंगल एरिया है काफी चीज़े हैं ।

आगे काले मैदान है। इस पे बच्चे झुला झूल रहे है। बहोत अच्छा लग रहा है।